यहां पे फोटो खींचा गया है इसके सामने एक स्कूटी दिख रही है और बीच में रोड है दोनों तरफ बिल्डिंग है।

यहां पे हल्दी का भी पौधा लगाया गया है और यहां पे नारियल का भी पौधा लगाया गया है।

सामने एक बहुत बडा बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक जिम के अंदर का दृश्य है यहां पे सभी लोग जिम करते हैं और यहां पे फिटनेस करते हैं।

जहां पे पेंट किया गया है बिल्डिंग का कलर ब्ल्यू से किया गया है और सफेद से।

पीछे में दो टावर दिख रही है।

बिल्डिंग का कलर सफेद है।

यहां पे एक टी_वी लगाया गया है और यहां पे दो तीन घड़ी लगाए गए हैं।

यहां पे एक बहुत बड़ा पुल दिख रहे है और नदी में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और पास में भी एक आदमी खड़ा है।

यहां पे नदी में पानी भी दिख रही है जो कि पूरा नहीं है फिर भी है पानी।

बहोत सारे और भी सामान रखे गए हैं जैसे कि कल्छूल बेलना और टेबल कुर्सी पलंग गोदरेज और यहां पे बहोत सारे लाइट भी लगाये गये हैं झालर लटकाये गये हैं।

यहां पे बहुत सारे आसपास आदमीन भी खड़े दिखाई दे रहे हैं।

एक बर्डे का दृश्य है जहां पे रूम के अंदर में बर्डे के लिए सजाया गया है।

आसपास में एक कुत्ता बैठा हुआ है बगल में एक पेड़ लगाया गया है।

ये एक सिटी का होटल या रेस्टोरेंट का दृश्य है।

बोर्ड का कलर सफेद है अंदर में प्रज्ञा केंद्र का काम किया जाता है जैसे कि पैसा निकाशी और पैसा डालने का काम किया जाता है।

यहां पे एक डंडा गढ़ा हुआ है उसमें एक पीला कलर के बोरे लगाए गए हैं।

यहां पे एक फ्रिज रखा गया है बगल में और यहां पे पंखे लगाए गए हैं तथा लाइट लगाए गए हैं।

सामने बहुत सारे बाइक खड़े हैं बाइक के सामने एक छोटा सा लंबा सा घर है।

इसके अंदर किसी सामान का दुकान है और यहां पे बाहर में गुब्बारे से सजाया गया है और बोर्ड भी लगाया गया है अमूल का ओर एक पिज़्ज़ा का बोर्ड भी लगाया गया है।

ये एक मूर्ति का दृश्य है।

इन का कलर पीला है ये एक शाम का दृश्य लग रहा है।

अंदर में बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं और बाहर में एक बाइक भी लगी बुलेट और एक पल्सर भी लगी है।

जहां पे बहुत सारे दवा रखे गए हैं।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफेद है और बिल्डिंग का बगल में एक और बिल्डिंग सटा हुआ है।

बच्चों का ड्रेस का कलर सफेद तथा पीला और ब्लैक है।